और फर्श जो है जो टाइल्स लगी हुई है जिसका कलर व्हाइट और ब्राउन है।

और कह काफी सारे जो झूमर लटक रहे है वो अ ल लटक रहे है।

ये एक पैलेस है जिसमें खाने के डी अ खाने की--

बड़ी सी गाड़ी लगी हुई है और जो ईमारत उसका कलर ओरेंज है।

और इसमें डॉग्स की पैडगिरी है और बॉन्स है कैल्शियम बॉन्स है।